बहुत सारे घर भी नजर आ रहे हैं बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां खाली रोड नजर आ रहा है।

और एक बिजली का बहोत बड़ा खंबा भी दिखाई दे रहा है।

बिजली के तार भी दिखाई दे--

और एक खाने की अलमारी सी बनी हुई है।

एक आदमी इसमें बैठा हुआ है।

यहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

यहां बहुत सारा बाजार दिखाई दे रा है।

यहां बहोत सारे आदमी कुर्सियों पर बैठे हैं।

और एक आदमिन को समझा रहा है।

और कुर्सियां भी रखी हुई है।

और भी हुई है।

यहां बहोत अच्छा पार्क दिखाई दे रहा है।

बहोत अच्छे अच्छे मछली के झूले बने हुए हैं।

बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई मेज पे--

बहोत बड़ी ट्रेन टीन के नीचे खड़ी दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारा तालाब लोड भरा हुआ है पानी से।